ये साफ़-सुथरा है शाम का वक्त है ।

और स्प्लेंडर प्लस भी है ग्लैमर पल्सर भी है अपाचे भी है लोग खड़े हैं पेड़ है नीम के आम के पीपल के --

यहाँ लोग झुके हुए हैं ऑटो भी दिखाई दे रहे हैं मार्केट है यहाँ सामने ।

खड़े है इस रूट पे बस स्टैंड भी है नजदीक में कही।

कारीगर वगेरह लोग खड़े हैं यह बहोत अच्छा --

किला का भी दिखाई दे रहा है ।